इस तस्वीर में हम देख सकते है एक शानदार सा झरना नीचे साफ स्वच्छ ठंडा सा जल और चारों तरफ कुछ छोटे बड़े पत्थर भी हमे नजर आ रहै हैं।

इस तस्वीर में हमें एक चलती फिरती सी रोड और सामने ही एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

और दूसरे हाथ इन खरपतवारों को या इन पेड़ पौधों में लगे कीड़ों को हटाने के लिए दवाई डाल रहे हैं।

यह कोई चिड़ियाघर की तस्वीर लगती है। इस तस्वीर में हम एक हिरण को देख सकते हैं जो के चारों तरफ से जाली के दरवाजों से घिरा हुआ है।